माॅल पूरी तरीके से लाइट से सजा हुआ है।

निचे फर्श पर टाइल्स लगे हुए है।

तस्वीर में काफी अंधेरा नजर आ रहा है।

बाईं तरफ सामने ओर कुछ दूर पीछे एक और पेड़ है।

यह तस्वीर एक मंदिर की लगती है।

बगल मे एक व्यक्ति का चित्र भी है।

लोहे से बनी नेट वगैरा लगी है जो खेलने के लिए है।

हाथी के पैर तथा चेहरा भी दिख रहा है।

बोर्ड जैसा बना है जिस पर काले रंग से कुछ लिखा गया है।

पीछे एक लड़की तथा तीन चार लड़के दिखाई दे रहे है।

बाई तरफ एक टेबल जैसे जगह पर स्प्रे और कुछ लाल रंग का डब्बा रखा है।